तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ बहुत सारे मेले लगे हुए है जिसमें बहोत सारे आकाश झूला लगा हुआ है।

इसमें मुझे बहुत सारे खिलोने दिखाई दे रहे है तथा बहोत भीड़ है इसमें मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ नीले एवं काले रंग के बादल भी है।

इस चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है की ये सैलून की पेंटिंग है जिसमे मुझे दिखाई दे रहा है की दो व्यक्ति बाल कटवा रहे है तथा तीन व्यक्ति बाल काट रहे है।

इसमें मुझे एक लड़--लड़का लाल कलर का शर्ट तथा दूसरा लड़का पीले कलर का शर्ट पहना हुआ है जिन्होंने अपने सिरों पे टोपी पहना हुआ है तथा एक टीवी दिखाई--

ज्यादा कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है इसमें मुझे बहोत बड़े-बड़े रोशन दान दिखाई दे रहे हैं तथा खिड़कियां है इसमें मुझे फर्स दिखाई दे रहा --

मुझे यहां सफेद कलर के काउन्टर दिखाई दे रहे है जिसमे मुझे काले रंग की हेलमेट रखी हुई दिखाई दे रहे है जिसमें मुझे एक सफेद रंग की बाइक दिखाई दे रही है।

ये इस चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ एक औरत खड़ी हुई है जो सफ़ेद कलर का बुरखा पेहनी हुई है तथा अपने शरीर पे चश्मा पेहनी है।

मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ बहुत-सा बच्चे अपनी काला को प्रदर्शित कर रहे --

इसमें मुझे एक रेलिंग दिखाई दे रही है जितना इसमें मुझे एक साइकिल सामने की और खड़ी हुई दिखाई एक स्कूटी सामने की और खड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है।